कुछ गर्ल लड़की लोग क्रिकेट खेल रही है शानदार एक विकेट कीपर और एक बेटिंग के पोज़ में जैसे गेंद का इंतज़ार करते हुए सुहाना मौसम में शाम का टाइम हो बेट्स नेट लगा हुआ है साइड में बिल्डिंग सा है।

हॉस्पिटल का वेटिंग एरिया है जहाँ पे लोग वेट करेंगे अपना किसी को पेशेंट को दिखाने के लिए चेयर लगा हुआ है साइड से बैठने के लिए ये स्पेशल रूम है।

और एक डीलक्स रूम है ओ.टी. और आई.सी.यु. . भी साम पीछे में है।

यहाँ पे लोग रिटेल शॉप है जहाँ पे ये सब सामान बेचते होंगे।

दूसरा बच्चा जिसका अभी बाल काटा जा रहा है।

किसी भी कंपनी का टावर हो सकता है जैसे जिओ एयरटेल कोई भी टेलीफोनिक टावर --